बोर्ड है एक टू विलर है एक आदमी है जो की दुकान के बाहर खड़ा है।

एक आदमी है जो कि ग सैंडो बनियान पहन कर खड़ा है।

आ एक सेंटर नजर आ रहा है और बाइक्स नजर आ रही है मल्टी नजर आ रही है फ्लोर नजर आ रहा है आसमान नजर आ रहा है। गेट नज़र आ रहा है।